यह एक ब्रांडेड कपड़े का शोरूम है।

राइट साइड में कपड़े रेक में जमें हुए --

पेड़ दिख रहा है और आसमान दिख रहा है ।

लोहे का बहुत सारा सामान पड़ा है।

वो नीचे जीने बने चढ़ाव को बना हुआ है।

कुछ लोग बैठे हुए है कुछ लोग ल खड़े हुए है।

यहाँ पर कुछ सस मजदुर खड़े हुवे हैं।

सब और तड़ापे लगे हुए है।

पत्थर दिख रहे हैं बड़े-बड़े --

ये गया धाम है यहाँ पितृ मोक्ष के लिए पूजा की जाती है ।

जिसमें कुछ लड़कियाँ साड़ी पहनी हुई है ।

एक लड़का है एक धुआँ जैसा ऑरेंज कलर का उड़ा रहा है ।

खंभा दिख रहा है बाहर सफ़ेद कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

साइड में बहुत हरी- हरी पेड़े और घासे है लगी हुवी है।

यहाँ समुदर के आस-पास में बहोत हरी ग पिली घास दिख रही है।

और बहोत सारी चेयर्स लगी --